पीछे काँच लगा हुआ दिखाई दे रहा है काँच के ऊपर एक लाल कलर की बॉटल रखी दिखाई दे रही है। दीवार पर दो टेबल फैन लगे हुए दिखाई दे रहे --

और एक किताब पकड़े दिख रहा है पीछे की तरफ एक अ-ह- रॅक दिख रहा है जिसमे बहुत सारी किताबें रखी हुई दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ एक हल्की सी लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है।

सामने की तरफ एक लोहे की जाली बनी है जहा पर एक ग्लास और तीन चार प्लास्टिक की पिंक कलर की बोतल रखी हुई है एक आदमी चाय पीता हुआ दिख रहा है और--

यहाँ पर एक ब्लू और ऑरेंज कलर की मैट बिछी हुई हैं। यहाँ पर कुछ लोग व्हाइट कपड़े पहने और कमर मे पीली कुछ कपड़ा बाँधें दिखायी दे रहे हैं।

पीछे की तरफ एक ब्रिज दिखाई दे रहा है लोहे का जिसके पिल्लर भी दिखाई दे रहे है और आसमान में बादल दिखाई दे रहे हैं।